बहोत से लोग दिख रहे है सामने के तरफ। उधर कुछ रंगोलीया बना रहे हुए है। और सामने की तरफ पेड़ पौधे दिख रहे है। पीछे खुला आसमान दिख रहा है।

और अंदर फर्नीचर दिख रहा है एक व्यक्ति बैठा हुआ दिख रहा है रैक दिख रही है सामने की तरफ और सीढिया दिख रही है।

और यहाँ पर कुछ अ कॉलेज टाइप दिख रहा है जिसपे लिखा हुआ है डी.एल.एस. पी. जी कॉलेज ।